एक व्यक्ति कसरत करता नजर आ रहा है बहुत सारी कसरत की मशीनें रखी हुई हैं।

सफेद रंग की कार है ये एक कार शोरूम --

इस चित्र में एक जगह दिख रही है जहां बहुत से व्यक्ति बाहर खड़े हुए हैं।

सामने कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं।

इस चित्र में एक कन्या बच्चों को डांस सिखाती नजर आ रही है।

रंगा हुआ है सामने की तरफ भी रंगा है।

सामने एक बच्चा बैठा दिख रहा है।

इस चित्र में एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।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

बाहर पूरी फैमिली परिवार खड़े हो।

इस चित्र में सामने अनार--

प्याज आम टमाटर सब पड़े हैं।

इस चित्र में एक बहुत ही सुंदर सोफा नजर आ रहा है।

बड़ी बिल्डिंगें नजर आ रही हैं।

इसमें लोग बहुत सारी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने आते हैं सफ़ेद रंग का है सफ़ेद रंग की एक्टिवा खड़ी है।

इस चित्र में एक कार्यालय नजर आ रहा होटल जैसी नजर आ रहीं हैं।

इस चित्र में नीली बस पुरानी दिखाई दे रही है।

हमें एक घर बना दिखाई दे रहा है।

व्यक्ति उनके आगे पीछे घूम रहा है।

सामने की तरफ पुलिस इस पार्किंग नजर आ रही है एक कार खड़ी है।

इस क्षेत्र में ढाबा दिखाई दे रहा है खटिया रखी हुई है।

लोग खाना खाते नजर आ रहे हें कुर्सी टेबिल भी रखे हुए हैं।

व्यक्ति खड़े हुए हैं हरे भरे पेड़ नजर आ रहे हैं।

वहाँ कुर्सियां भी रखी हुई है हरे भरे पेड़ को--

पेड़ दिख रहे हैं नीला आसमान और पत्थरों से सुंदर।

जगह बहुत ही प्यारी लग रही है बहुत ही बहुत ही है।

इस चित्र में एक बड़ी बैग नजर आ रही बड़ी--

ये एक शादी समारोह लग रहा है ऊपर की तरफ काली पंखिया दिख ऊपर की तरफ भी बिल्डिंगे दिख रही है।